यह स्टोर देखने में बहुत ही सुंदर और साफ सुथरा है जो कि देखने में बहुत ही अच्छा --

जोकि देखने में बहोत ही साफ सुथरे और अच्छे लग रहे हैं।

और इस यहां पर पेट्रोल बहोत अच्छी क्वालिटी का होता है।

इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि यह गमलों की दुकान है जिसके अंदर बहुत सारे गमले हैं।

इस तस्वीर में हम देख सकते है कि यह सिटी हर्ट मोबाइल महल है जिसके अंड--

इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि यह एक हेल्थ डिपार्टमेंट है इसके आस पास बहोत सारे पेड़ पौधे हैं जोकि दिखने में बहोत ही अच्छा लग रहा--

इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि यह एक बाग है जिसके अंदर बहोत सारे फूल--

आसपास के लोग फूलों को तोड़कर उनका अच्छा डिजाइन बना रहे हैं ताकि बहुत ही अच्छा लगे।

इसके अंदर बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं।

इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि यह एक बाग है इसमें बहुत सारे लोग सैर करते हैं इस बाग के अंदर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।

यह एक होटल में है जो इसके अंदर--